हेलो फ्रेंड्स देखिएगा सामने एक बहुत सारी भीड़ नज़र आ रही है।

एक अ मकान भी दिख रहा है ऊपर बिजली के तारे भी हैं औोर --

और आजू बाजू पेड़ है और साइड में भी दो कार खड़ी हुई हैं।

आसपास त दो तीन पेड़े नज़र आ रहे हैं और मकान का कलर गुलाबी कलर का है।

हेलो फ्रेंड्स देखिएगा सामने हॉस्पिटल दिख रहा है एक हॉल दिख रहा है बड़ा सा वहाँ पर कुर्सियाँ लगी हुई हैं।

पर सीलिंग है छत है वहाँ पर पंखे लगे हुए हैं।

और ये काफी बड़ी मस्जिद है और काफी खूबसूरत लग रही है इसमें एक दरवाज़ा है खिड़कियाँ हैं।

सामने देखिए कई सारे बास्केट रखे हैं टोकरियाँ रखी हैं जिनमें फ्रूट फल रखे हुए हैं उसमें केले हैं अमरूद हैं।

हेलो फ्रेंड्स देखो सामने बिल्डिंग है दिख रही है और यहाँ पर अ साइकिलें खड़ी हैं बाइक खड़ी हैं काफी सारी --

और एक व्यक्ति जो बाइक पर बैठा हुआ है आजू बाजू हरे हरे पेड़ है बहुत सारे काफी पेड़ है यहाँ पर और सामने देखो मैदान दिख रहा है।

सामने एक कार खड़ी हुई है सफेद कलर की जो बहुत ही सुप्पर कार शानदार कार लग रही है।

और ये रात का समय है रात हो रही है और इस हॉल में काफी अच्छी लाइटिंग से सजा हुआ ये है।

हेलो फ्रेंड्स देखिएगा सामने बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर दिख रहा है जोकि बहुत अच्छे से सजाया गया हुआ है।

हेलो फ्रेंड्स ये देखिएगा शराब की दुकान है वाइन शॉप लिखा हुआ है ठेका शराब और यहाँ पर देखो शराब मिलती है।

हेलो फ्रेंड्स देखिएगा सामने मकान बन रहा है जिसकी ईंटे ईंटे की दीवाल है।

प्लास्टर नहीं हुआ है और यहाँ पर देखो छत भी बनी हुई है एक खिड़की लगी हुई है सामने --

और नीचे हरी हरी घास दिख रही है और ऊपर एक टीन शेट का छत है।

और जिन्हें लोग खरीद रहे हैं और ऊपर बल्ब है।

जो रोशनी आ रही है बल्प की और काफी सारे छोटी बड़ी बहुत सारी मछलियाँ यहाँ पर रखी हुई है फ्रेंड्स --

यहाँ पर देखो एक हॉल नज़र आ रहा है जिसमें एक महिला है जो माइक में कुछ स्पीच भाषण दे रही है।

औरर वहाँ पर एक लाल कलर की कुर्सी रखी गई है और लाइट भी दिख रही है और ये महिला कुछ भाषण दे रही है।

और आरती की थाल भी है और दीपक जल रहा है और देखिए बहुत सारे भगवान की फोटो यहाँ पर दिखाई दे रही --

बहुत सारी बिल्डिंग यहाँ पर दिख रही है ऊपर देखो आसमान दिख रहा है नीला नीला सा --

हेलो फ्रेंड्स देखिएगा ये बच्चों के खेलने के लिए काफी सारी --

और नीला नीला सा आसमान दिख रहा है और बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं।

सामने एक बहुत बड़ा हॉल दिख रहा है जिसमें पिक्चर्स लगी हुई है ऊपर टिन शेड है और लाइटें लगी हुई है बल्ब लगे हुए हैं ऊपर --

ये आगे के दो पहिए छोटे हैं पीछे के दो बोड़े बड़े बड़े पहिए हैं और ये ट्रैक्टर एक पेड़ के नीचे छाया में खड़ा हुआ है।

हेलो फ्रेंड्स देखिएगा सामने मकान दिख रहा है ये दो मंजिल का मकान है।

पर्पल कलर का चुन्नी ओड रखी है काले कलर का ड्रेस पहन रखा है और यहाँ पर सीढ़ियाँ भी नज़र आ रही है बाहर --

हेलो फ्रेंड्स देखिएगा सामने एक कैफे नज़र आ रहा है जिसके ऊपर काफी बड़ा सा बोर्ड लिखा हुआ है बोर्ड लगा हुआ है उस पे लिखा गया है। --

तिलक साइबर कैफे तिलक साइबर कैफे इसका दरवाजा काँच का है बाहर लाइटें लगी हुई हैं और काफी सुंदर सा ये कैफे है।

हेलो फ्रेंड्स देखिएगा सामने एक मंदिर है सामने माता जी कीी मूर्ति रखी हुई है माता जी शेर पर बैठी हुई है।

और ये बहुत सारे आसपास बहुत सारी लाइटें लगी हुई है जोकि बहुत सुंदर लग रही हैं।

बहुत सारे कुछ लिखा हुआ है और ब्लू कलर से लिखा वाइट कलर से लिखा है ब्लू कलर की फैंसिंग बनी हुई है और ये सामने एक लेप दिख रही है।

और सूट बहुत ही सुंदर खूबसूरत शानदार दिखाई दे रहे हैं।

पर लाइटिंग लगी गई है और बहुत सुंदर सा ये हॉल दिख रहा है।

हेलो फ्रेंड्स देखिएगा ये काफी शानदार सा ऑफिस दिख रहा है।

और रोड नज़र आ रही है सड़क नजर आ रही है।

और टेढ़ी मेढ़ी सी सीढ़ियां हैं ऊपर तक जा रही हैं और यहां पर बाहर दीवार पर बहुत सारे टैटू बने हुए हैं।

हेलो फ्रेंड्स देखो शाम का सीन दिख रहा है शाम हो रही है ऊपर बिजली के खंबे हैं।

बड़े बड़े काफी एक रोड है जिस पर बाइक जा रही है।

हेलो फ्रेंड्स देखिएगा ये एक ऑफिस है ऑफिस दिख रहा है जिसमें आगे तीन लेडीज बैठी हुई है वो काम कर रही है।

पीछे एक अअअ जेंट्स हैं पुरुष हैं वो भी अपना काम कर रहे हैं और टेबल लगा हुआ है।

हेलो फ्रेंड देखिएगा मार्केट नज़र आ रहा है एक बोर्ड नज़र आ रहा है ब्लू कलर का जिसमें वरका वेरका लिखा हुआ है एक बस नज़र आ रही है।

जो कि सामने देख रहा है एक अ व्यक्ति पीछे खड़ा हुआ है एक व्यक्ति बैठा हुआ है।

और यहाँ पर ऊपर देखो तारे नज़र आ रहे हैं बहुत सारे और सफ़ेद कलर की दीवार है और यह व्यक्ति सामने की तरफ देख रहा है।